वो एक शेप की दिखाई दे रही है।

नीचे बहोत सारे पेन का बॉक्सेस दिखाई दे रहा है वो अंकल एक--

और पीछे दो एस्केलेटर दिखाई दे रहे हैं।